यहां मुझे कुछ प्याज दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक चूल्हा दिखाई दे रहा है।